एक तालाब दिख रहा है।

कुछ महिलाएं उतरी हुई हैं।

यह लोग छठ पूजा का त्यौहार मना रहे हैं।

कमरे की दीवार पर एक लाइट लगी हुई दिख रही है।

बहुत सारी पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारी ट्रक्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर लोग गाड़ियां ठीक कराते हैं।

हमें इस तस्वीर में एक सब्जियों की दुकान दिखाई दे रही है।

यह एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है।

यहां पर लोग आकर गाना गाते हैं।

इस कमरे में एक आदमी खड़ा है।

पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीज़ल मिलती है।

हमें इस तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक दुकान दिख रही है।